बहुत सारे लोगों की है।

यह एक बहोत बड़ा--

यह फोटो काफी सुंदर है इसमें--

यह फोटो एक बहोत अच्छी दुकान का है।

ये फोटो बहोत सारे--

यह तस्वीर एक वाटर पार्क की लग रही है।

यहां से खंबे भी दिख रहे हैं।

इसमें स्कूल की तरफ से यह एक--

किया गया है जिसमें स्टूडेंट्स दौड़ लगा रहे हैं।

प्राचीन और चिप्स कुरकुरे के समानों की है।

बहुत सारी दुकानें यहां है।

भी खड़े हुए हैं या--

यह फोटो एक घर की है।

यह फोटो एक मकान की है मकान--

इसमें बहोत सारे छोटे छोटे बच्चे--

यह एक बड़ी और ब्रांडेड दुकान है।

इनके नाम का बोर्ड लगा हुआ है।